बड़ी ही सुंदर दुकान है और ऊपर पंखा लगा हुआ है।

पंजाब नेशनल बैंक का काउंटर है शायद--

ये एक सोनार की दुकान लग रही है।

का दृश्य भी दिख रहा है उसके बगल ही दो बिल्डिंगें और है।

इसके सामने का रास्ता बना हुआ है यहां पर काफी लाल झंडे भी लगाए गये हैं।

ये पीले रंग की दिवाल दिख रही है इस बिल्डिंग में एक--

बगल में एक गाड़ी भी खड़ी हुई है और यहां ये मैदान जहां पर सफेद रंग की--

पर जैसा कि इसके चित्र पर बना हुआ कुत्ता बिल्ली--

बना हुआ है गाय भी बनी हुई है तो यह मेडिकोज जो है यह पशुओं के लिए अनिवार्य रूप से यहां पर बनाया गया है।

जिसके ऊपर एक नींबू और उसके अंदर--

ये एक कमरा है जिसकी मेज पर एक कॉपी रखी हुई है।

पीले रंग का ये कमरा लाल पट्टे जैसा काफी अच्छा लग रहा है और आलमारी भी है इसके अंदर खिड़कियाँ भी लगी हुई हैं।

लेने के लिए उतावले हो रहे हैं पीछे बहोत ही भीड़ है।

यह आलू की टोकरी है जिसमें काफी--

एक गाड़ी के ऊपर लाल रंग का हेलमेट भी है और इस ऑफिस की दीवार सफेद है हरी पट्टियों के साथ यह एक--

ये एक डॉक्टर की दुकान है जीसके अंदर एक चेयर लगी हुई--

नीचे काफी सारे जूते रखे हुए हैं और नीचे का टायर --

नीली और पीली पट्टी से ये रेलवे ये बी_पी_सी_एल पेट्रोल पंप बनाया गया नीचे इंटरलॉकिंग की सड़क भी है।

इस चित्र में दो गाड़ी दो चार चक्का दो बाइक दिख रही है।

ये एक फूलों का मार्केट है जहां पर काफी भीड़ उमड़ कर आई है।

यहां पर काफी भीड़ लग रही है काफी लोग यहीं पर खड़े या आगे पीछे चलते हुए खरीदारी कर रहे--

यहां पर लगभग दो तीन लोग हैं और पीछे तालाब--

एक ऑटो वाला भी है और काफी लोग इधर उधर जा रहे--

यहां ये नाम लिखा हुआ है ये काफी सुंदर लग रहा है।